यहाँ पर मुझे एक बहुत ऊँची बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग पर मुझे कोकोकोला कलर और रेड कलर व्हाइट और ब्लू कलर का पैंट पुता हुआ दिखाई दे रहा |

यहाँ पर मुझे तीन लेडिज एक जेंट्स दिखाई दे रहा है। एक लेडिस दो लेडीस ने उलटे पल्ले की डाली साड़ी पहनी है एक लेडीस ने फ्री पल्ले की --

और एक व्यक्ति रोड पर झाड़ू लगा रहा है ये झाड़ू से वो कचड़ा एक साइड कर रहा है। कारखाने का कलर पिंक कलर से पैंट हुआ है|